यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा हो। यहाँ पर --

दिखाई दे रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा है कि इन्होने --

और जगह साफ़-सुथरा नजर आ रहा है।

जिम में बोहोत सारे सामान --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है। यह कोई ट्रैन का पटरी है। यहाँ पर --

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। देखने से ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई फंक्शन हो रहा है। यहाँ पर बहोत सारे लोग --

कर रहा है उसके पैर का मसाज --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

जो कि पिंक कलर का ऑरेंज कलर का रंगा गया है।

यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ --

खड़े हैं। एक ने ब्लू कलर का शर्ट और पेंट पहना है। एक ने व्हाइट कलर का शर्ट और पेंट पहना हुआ है।

जो कि बाहर की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है।

दिख रहा है बहोत सारे पंकछि --

गोल्डन की वजह से अच्छा लग रहा है देखने में।

सुबह का समय है धुप की किरण पड़ रही है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र को देखने से लग रहा है कि बहोत बड़ा बिल्डिंग है जो कि एक साथ बहोत सारे जुड़े हुए हैं।